ये आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा नजारा कैसे हैं।

यह पंडाल वाला बहुत बढ़िया लगा हुआ है बहुत मस्त लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कितना सुंदर लग रहा है।

ये देखने में तो ये किला से कम नहीं है किला ही है ये अब देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये किला जैसा ही लग रहा है ये है तो किले कुछ रहे या ना रहे ये किला ही है हमको तो पता चल रहा है कि ये किला ही है और किला है तो इतना छोटा मोटा किला नही है बहुत बड़ा किला है बहुत भयंकर किला है।